ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है ग्राउन्ड मे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो स्कूटी चला रहे है कुछ बच्चे वहा पे खेल रहे है। आस-पास--

एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड मे बच्चे क्रिकेट खेल रहे है तीन स्टंप लगे हुए है एक लड़का बैट पकड़े हुए है वो पीले कलर की टी-शर्ट और काले कलर का लोवर पेहने हुए है कुछ बच्चे किपिंग कर रहे है।

ट्रेन की पटरी दिखाई दे रही है दोनों साइड नीले कलर का शेड दिखाई दे रहा है ऊपर बिजली के खंबे दिखाई दे रहे --

किले खिड़किआ दिखाई दे रही है किले के ऊपर एक पहाड़ स दिखाई दे रहा है।

स्टे के लिए घर भी ने हुए है छोटे-छोटे बाहर स्विमिंग पूल के आस-पास गोटा पत्थर लगे हुए दिखाई दे रहे है।

शेड के पास मे एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिख रहा है एक ट्रेन की खिड़किया भी दिखाई दे रही है ट्रेन की खिड़की के पास मे ए सिक्स नंबर का डब्बा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

किले की दीवारों पे बुद्ध की तस्वीर बनी हुई है कुछ आदिवासियों की भी कला चित्र बने हुए है।

खाली टेबले दिखाई दे रही है राउंड कलर की टेबल है उपर ल लाइट लगे हुए दिखाई दे रहे नीचे फ्लोर क्लीन दिखाई दे रहा है साम बाजू वाली दीवार मे सीमेंट से पट्टी नही हुई है एक ईलेक्ट्रिसिटी स्विच भी दिखाई दे रहा है।